नमाज अदा करते है पांच छे वक्त के यहाँ सब लोग आते है नमाज़ पढ़ने के लिए और सब लोग एक साथ सिसकत सीधी कर के नमाज पढ़ते है सब एक साथ रहते है ।

ये एक बिल्डिंग है जो आपात के है इमरजेंसी के लिए है यहाँ आते है लोग बहुत है जो रेड कलर से पेंट किया हुआ है और वाइट कलर से पेंट किया हुआ है ।